बहुत सारे सामन दिखाई दे रहे यहा पर हमे पॅकेट मे सामान दिखाई दे रहा है यहा पे हमे बिस्कुट दिखाई दे रहे यहा पर हमे अलग अलग कलर के पैकेट दिखाई दे रहे जैसे लाल पीला नीला काला हरा कलर का दिखाई दे रहा है।

बड़े-बड़े दरवाजे दिखाई दे रहे यहा पे हमे खिड़किया दिखाई दे रहे यहा पर हमे खुला आसमान दिखाई दे रहा यहा पर रात हो रही इसी वजह से यहा पर हमे अंधेरा दिखाई दे रहा है।